पेड़ के साथ-साथ हमको नीचे घांस भी दिख रही है जो हरी-हरी दिख रही है जोकी बहुत ही बढ़िया घांस लग रही गमले रखे हुए दिख रहे है जोकी हमको पीले कलर के ग्रे कलर की दिख रही है जोकी बहुत ही बढ़िया लग रहा है एक फूल दिख रहा हैजोकी गुलाब का दिख रहा है जोकी बहुत ही बढ़िया लग रहा हैऊपर आसमान दिख रहा जोकी काला--

हमको एक रेलिंग दिख रही है जो की लोहे की दिख रही जो की बहुत ही बढ़िया लग रही है हमको सामने एक बोर्ड दिख रहा है जो की काला दिखाई दे रहा है जिस पर सफेद कलर से नाम लिखा हुआ दिख रहा है कपड़े सूखते हुए दिख रहे है जो की सफेद कपड़े--